कोपती का दुकान दिख रहा हैं यहाँ पे कान निखारन दिख रहा हैं भगवान का फोटो दिख रहा हैं भगवान के फोटो पर फूल चढ़ाया हुआ दिख रहा हैं ।

प्राथमिक स्कूल दिख रहा हैं पौल दिख रहा हैं तार दिख रहा हैं घर दिख रहा हैं पेड़ दिख रहा हैं रोड दिख रहा हैं ।

घर हैं टेबल हैं कुर्सी हैं बैठने वाला हैं जिम का दुकान बहुत भारी हैं खुल ना चाहिए और भी चीज़ पे इसमें नहीं बहोत सारे दुकान--

आसमान कलर को लेके दिख रहा हैं लोग सब बैठे हुआ दिख रहा हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा हैं ।

इसमें लड़का से स्कूल पढ़ने जारा हैं पूजा होरा हैं सरजी सा हैं ।

और नरल लिखा हुआ दिख रहा हैं राखी बहुत सारे रंग बिरंग की राखी इसमें हैं ।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं और यहाँ पे सी_एन_जी गैस की एक कुछ डिब्बा दिख रहा हैं।

यहाँ पे मीटिंग होरा हैं बहुत सारे आदमी आया हुआ हैं और बैलून से सजा हुआ हैं पंखा लगा हुआ हैं।

चा वो कुछ कॉफ़ी वोफ्फी पी रहा हैं साइज में चद्दर ओढे हैं और इसको मिठाई खिला रहा हैं।

कार्टून हैं इसमें फ्रॉक हैं जीन्स हैं ।

और लोअर भी हैं इ ज पिलाजो भी हैं और टी शर्ट छोटा बच्चा के लिए हैं अ क--

बहुत सारा बैलून इसमें हैं देखिये कोई भगवान का फोटो हैं।

और एक हिरोइन का फोटो लगा हुआ हैं हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ हैं।

और अंदर कुछ धरा हुआ सामान लिखा हैं और लिसा हैं और शिखर मसाला भी हैं।

लाइब्रेरेरी हैं लाइब्रेरेरी बच्चे सब पढ़ने आए हैं दो तीन चारगो बच्चे आए हैं और खाली हैं इसमें--

ऊपर का पंखा नही चल रहा हैं टेबुल पंखा हैं और स्टैंड पंखा भी हैं।

ए स्टेप यू पी डांस अकैडमी हैं।

इसमे डायस करने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं और इसमे बहुत सारे बच्चे सानाइस करते टेक्स फाइल में कार ले दिख रहा हैं।

और कुर्सी भी हैं कती कती हैं बैलून हैं रेड कलर वाइट कलर पीला कलर --

मार्बल टाइल्स सनेटर पाइप इत्यादि लिखा हुआ हैं मोबाइल नंबर अठ्ठानब्बे पैतीस--